स्टेट बैंक है बगल में भी दूकान है इधर भी दूकान है।

तालाब है बहुत सारा नाव है बहुत सारे लोग है और बहुत सारा टॉवर है और बहुत गहरा तालाब है और बहुत सारा नाव है और बहुत सारे लोग --

ग्राउंड है और वहाँ पे घर घर जैसा कुछ बना हुआ है और इधर टावर है और यहाँ पे पानी जा रहा है |